ये एक काफी बड़ा और अच्छा सा रूम दिखाई दे रहा है जिसमें सामने और तीनों तरफ सोफे लगे हुए हैं।

दीवार पर ऐसी लगा हुआ है और बर्गर --

और पहाड़ पे से कुछ पानी भी बहता हुआ दिखाई दे रहा है।

और मिट्टी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

सिल्वर गुलाबी हरे लाल कलर की दिखाई दे रहे है।

मंदिर की दूसरी और भी एक झंडा हुआ झंडा लगा हुआ है।

तोते काफी कलरफुल नजर आ रहे है तोतो का कलर ऑरेंज और ब्लू दिखाई दे रहा है और काली कलर की--

और कुछ पाइप भी लगे हुए दिख रहे है।

बोर्ड में एक चित्र भी बना हुआ दिख रहा है बोर्ड दीवार से टिका हुआ रखा है।

बोर्ड पर लिखा हुआ है पास में काफी सारी छोटी छोटी घास भी लगी हुई है।

जैसे कि फ्लोवर पोर्ट और कुछ नकली फुल--

गुलदस्ते रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ कांच का समान भी रखा हुआ है।

पास में जो काफी बड़े बड़े सोफे भी लगे हुए हैं।

किनारे पर निचे कि तरफ कुछ गमले लगे हुए है।

पुतला भी टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में एक बहोत बड़ा पार्क बना हुआ है।

इस पिक्चर में एक बहोत बड़ा तलाव दिखाई दे रहा है जिसमें काफी सारा पानी भी दिख रहा है।

पानी के अंदर एक नाव भी दिख रही है जो की लकड़ी की है।

एक माता कि एक भगवान कि मूर्ति रखी हुई है।

सर पर मुकुट भी फना हुआ है और गले में माला भी डली हुई दिखाई दे र्हेई है।

यह एक काफी अच्छा डेकोरेशन की हुई दिवार है दिवार पर जो--

और सामने कुछ लकड़ी की टेबल और कुर्सियां लगी हुई है।